ये एक स्टोर है जहाँ पे सामने में तीन चेयर लगा हुआ है और बैलून लगा हुआ है।

और कई सारे बिस्किट और ब्रेड के पैकेट रखा हुआ है जहा पे कई तरह तरह के सामान मिलते है।

यह एक दुकान है जहां पे बोहत तरह तरह के कई तरह तरह के सामान मिल रहे है।

और कुछ पैर पौधे लगे हुए है। ये हम म घर का कलर व्हाइट और कत्था और इनके वॉर्डर मे ग्रीन कलर का कलर लगा हुआ है।

यहा पे ग्रीन कलर का सीढ़ी है और उसके आगे है पार्किंग लगा हुआ है। कुछ बाइक पार्किंग हो रही है और उसके बगल मे एक ग्रे कलर का घर है।

यहाँ पे एक मंदिर है जो उसके ऊपर गुंबज मे गोल्डन कर्लर लगा हुआ है और नीचे रेड कलर है और ए साइड पे मार्बल का काम किआ हुआ है और रेड कलर का अमम दरवाजा है। और ये --